ऑटो के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है जिसका कलर लाल है।

इन सभी कुर्सीयो का कलर कथ्या है और टेबल पे लगे कपडो का कलर वाइट ।

फील्ड के ऊपर शायद में एक पहाड़ दिख रहा है।

इस रूम के सामने रास्ते पे एक स्कूटी लगा हुआ है साइड में कुछ कांच के गेट या खिड़की लगाया हुआ है।

यहां एक जिम सेंटर लग रहा है।

जिम सेंटर में कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

दुकान के पीछे साइड गुलाबी कलर का कुछ दिख रहा है।

दुकान के छत में पंखे और बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

तीनों एसी फैन का कलर व्हाइट है।

छत की रेलिंग का कलर सफेद है और इसके साइड में लगे रेलिंग का कलर ब्लू ।

सामने बहुत सारे घर दिख रहे हैं सभी घरों में लाइट जल रही है।

यहां एक मोटर पार्ट्स दुकान दिख रहा है।

इसके चारों तरफ से तार का बाउंड्री किया हुआ है।

और यहां साइड में एक बिजली का पोल भी दिख रहा है।

इस बोर्ड का साइज बहुत ही बड़ा है इस बोर्ड का कलर पीला और लाल है।

दुकान का कलर सफेद दिख रहा है।

तालाब के साइड में एक बहुत लंबा रोड गया है।

यहां एक गाड़ी का इंजन खोला जा रहा है।

साइड में कुछ मंदिर जैसे दिखने वाली इमारतें भी हैं।

रूम में दो सोफा भी लगाया हुआ है इस सोफो का कलर मिट्टी कलर का है।

इसमें आधे पौधों में हरा कलर दिख रहा है।

गेट के ऊपरी भाग में हाथी के मूरत बनाया गया है।

इन कुर्सियों में लगाए हुए कपड़ों का कलर सफेद और ब्लू है।

दुकान के सामने बहोत सारे गुब्बारे भी लगाए हुए हैं गुब्बारो का कलर गुलाबी और व्हाइट है।

इस सांचे के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है और उसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ है जो कि इसमें कुछ काम कर रहा है।

इस रूम में कपड़ा या और कुछ बोने का काम चल रहा है।

यहां पर एक ब्लैक कलर के प्लेट में चावल और सलाद रखा हुआ है।

इस रूम के सामने एक गेट है जिसमें नीला कलर का कांच लगाया हुआ है।

जिसमें ब्लू कलर का टीशर्ट यह पहना है।

ब्लू कलर के सामने दो कुर्सियां बै है।

सभी मीटरों का कलर सफेद दिख रहा है।